बहुत कलरफुल है टोटो लगा हुआ लगा हुआ है।

पहाड़ के दोनों साइड से बीचों बीच झरना है।

बहुत अच्छा ब्रांडिंग है।

और सिलसिलेवार से लगाया गया है लेकिन एक कमी है इसमें।

यह एक पार्क है।

तालाब है तालाब के अंदर एक सरस और एक --